एक डैम नजर आ रहा है जो की पानी फैंकता हुआ नज़र आ रहा है इसी के साथ मुझे पानी का कलर मुझे ब्राउन कलर का नज़र आ रहा है पानी थोड़ा गंदा नजर आ रहा है। इसी के साथ मुझे डैम --

किसी के सामने की तरफ मुझे ट्रक के पहीए नजर आ रहे हैं जो कि सामने तरफ नजर आ रहे हैं ऊपर की तरफ का मौसम भी काफी साफ नजर आ रहा है।